ये ऑटो दिखाई दे रहा है और उसका अंदर में आदमी भी है बाहर में भी है।

एक रेड कलर का फ्लैग लगा के है।

कार्टून भी दिखाई दे रहा है और भी दिखाई दे रहा है और ऊपर में एक रास्ता भी है।

दुकान का अंदर में लोग दिखाई दे रहे हैं और एक सिंटेक्स भी दिखाई दे रहे हैं।

अलग साइड का टेबल में रखे हैं और स्विच भी दिखाई दे रहा हैं।

लाईट भी बहुत सारा जला के हैं और बाइसिकल कलर भी अलग अलग का है पिंक कलर ऑरेंज कलर और बिकने वाला में एक प्लास्टिक लगाके है।

पीछे साइड में पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

घर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे रस्सी भी दिखाई दे रहे हैं।

ये आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं और लोहा भी दिखाई दे रही है।

एक वाल दिखाई दे रहा है इसमें वक्सिनेस आर तुगबोत्स ऑफ प्रीवेंटिव हेल्थ लिख के है।

वॉल में एक फोटो लगा के है वायर भी है और यहां में लेके हैं।

सभी दिखाई दे रही है व्हाइट से पीछे साइड में घर भी दिखाई दे रही --

एयर भी दिखाई दे रही है और अलग अलग कलर की लाइट दिखाई दे रहे हैं।

बेडरूम दिखाई दे रहे इसमें बिस्तर भी है टेबल भी है।

भी है और स्विच भी दिखाई दे रहा है।

घर का बाहर में वो चेस खेलने वाला एक दिखाई दे रही है।

पीछे साइड में पहाड़ भी दिखाई दे रहे--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

बेम्बु भी दिखाई दे रहे और मुझे सेंटेक्स भी दिखाई दे रहे।

और उसका पीछे में एक घर भी है वायर लोग भी है बाहर में सिंटेक्स भी है।

एक है बड़ा वाला इसका पीछे साइड में पहाड़ भी है।

घर भी दिखाई दे रही है और वॉल भी वाइट कलर की है और गेट दिखाई दे रही है।

यह एक रूम दिखाई दे रहा है।

कैंची भी दिखाई दे रहा है और पीछे में पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

आलू भी है प्याज भी है।

तो भी है और कैमरा भी दिखाई दे रहा है।

बड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है पहाड़ सब भी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट भी है और पर्दा भी लगा के है।

पेड़ भी दिखाई दे रही है और टीना वाला घर भी दिखाई दे रही है।

बाहर में आधा स्काई प्लेट दिखाई दे रही है।

पूरा सड़ने वाला भी है और मुझे एक बास्केट भी दिखाई दे रही है।

मेज दिखाई दे रहे है का ऊपर में बहुत सारा आदमी है।

माउस भी दिखाई दे रही है स्विच भी दिखाई दे रही है और पिन आउट भी दिखाई दे रही--

डस्टबिन भी है ब्लू कलर की टेबल मे दिखाई दे रही है।

व्हाइट कलर की भी है ग्रीन कलर का भी है।

और डब्बा है एक बाला में खाना है और एक बाला में पानी है।

दो हार भी दिखाई दे रहा है अलग अलग कलर का।

एक बॉक्स भी दिखाई दे रही है।